और एक जन का हाथ भी दिखाई पड़ रहा है पीछे कुछ कार्टून भी रखे हुए हैं।

मुझे ये दृश्य किसी गुफा का दिखाई पड़ रहा है।

यहां पे काम करने वाले इंप्लाये भी दिखाई दे रहे है।

जहां पर एक मिनी वैन भी खड़ी हुई है। एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है।

जिसमें छोटे छोटे रेड हार्ट बने हुए हैं लाल दिल--

मुझे यह दृश्य किसी घाट का दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सी नावे हैं और--

ट्रैवलिंग एजेंसी का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत--

और अच्छा बहुत अच्छा सफ़ेद-सफ़ेद फूल भी लगे हुए हैं।

पीछे रेलवे की बाउंड्री लाइन है तो इससे कंफर्म होता है कि ये एक कोई --

उसके बगल से एक मोटर जो की भरने के लिए रखी हुई है।

इसमें एक दुकान दिखाई दे रही है जिसका नाम शशांक सेल करके है उसके बगल में शटर गिरा हुआ है।

यहां पर एक स्कूटी भी खड़ी हुई है।

बहोत सारे अपने तिरंगे कलर के बैलून भीं लगे हुए हैं।

किसी स्कूल का दिखाई दे रहा है। जहां बीच में बहुत बड़ा सा मैदान है। ऐसा लग रहा है--

बहोत से लोग दिख रहे हैं बहोत सी बाइके भी खड़ी हुई हैं।